बच्चों को कोचिंग दे रहा है टीचर के ऊपर दो लाइट लगी है एक बोर्ड लगा हुआ है टीचर ब्लैक पैंट --

यह सिलाई की मशीने है बिजली की पर चलती है ये हैं आदमी की वहां देख रही है ये है यह कुर्सी पड़ी है।

यह एक होटल है जिसके अंदर चार पांच कुर्सी एक मेज पड़ी है शीशे लगे हुए हैं।

पीछे दीवार पर पेंटिंग भी बनी हुई है।

यह एक लकड़ी का सोफा है।

छत पर पंखा लगा हुआ है एक अलमारी लगी हुई है अंदर सफेद कलर की लाइट लगी हुई है।

और इसके के सिर पर पीला हेलिमेंट है।

और लाल सी जैकेट पेहर रहे हैं देखो।

सुनहरे से कलर में मिठाइयां रखी हुई हैं सामान रखा हुआ है।

यह एक कचड़ा गाड़ी है।

एक मीनार सी भी बनी हुई है सफेद कलर की पीछे।

होटल के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

बराबर में कमरे वगैरा हैं।

यह बंदा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है कुर्सी दो मेज सी भी।

और बंदा हाथों से पुस अप कर रहा है एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है।

और उपर लाइट लगी हुई है एक बंदा पीछे मशीन पर दो जिम मशीन खड़ी हुई है पीछे जिम कर रहा है।

जिसकी ढैंग पर घास आदि खड़ा हुआ है।

और यहां एक गेट वगैरा भी है। यहां गाड़ी भी खड़ी है। यहाँ --

आदि प्रकार के गुड्डे गुड्डे वगैरा--

कहीं की प्रतियोगिता हो रही है उस--

यह एक बैंक है। इस बैंक के बाहर पब्लिक जमा हुई हुई है।

वे भाई बाइक पर बैठा हुआ है।

चार आदमी इस तरफ भी बैठे हैं एक बूढ़ा भी बैठा हुआ हैं ये दुकान की बाहर बै--

हरे हरे पत्ते भी है सूखी डालियाँ भी है।